इस फोटो में सामने यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है यहां पर एक हरे रंग का पेड़ भी उगा हुआ है।

इस इमेज में यहां पर सामने एक इमारत दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

यहां पर लाइटें जलती नजर आ रही है सामने यहां पर कार में लोग पेट्रोल डलाते दिख रहे हैं।

एक फाटक दिखाई दे रहा है यहां पर अशोक बाल उद्यान लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक रूम का दरवाजा दिखाई दे रहा है यहां दीवार पर एक पेंटिंग भी लगी हुई है।

यहां पर कुछ बड़े पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर बाइक्स भी खड़ी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में सामने यहां पर बाउंड्री के ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में सामने यहां पर बी_आर लिखा दिखाई दे रहा है।